डांस कॉन्फिडेंसन भी हो रहा है तो काफी पब्लिकस इस पार्टिसिपेट किया है।

बैकग्राउंड में साइड में बहोत ज्यादा हरियाली है और इस पुल के ऊपर एक लड़का--

वो यहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा--

और उ उधर की तरफ देखा जाए तो सामने--